वो देखने में बोहोत सुन्दर लग रहा है उसके जो सामने जो है कि बोहोत से पेड़-पौधे लगे हुए हैं और ग्राउंड है और बोहोत देखने में सुन्दर लग रहा है। ये दृश्य बहोत अति सुंदर है।

बीच में नाव है इधर भी बीच नाव है। सब लगे है और उस पार भी जाएगी पेड़-पौधे घर बिल्डिंग सब है। टावर है सब --

यह शहीद भवन है जो कि यहाँ पे उम्म्म बोहोत सी उम्म मुर्तिया भी हैं जो यहाँ पे --

रिकॉर्डिंग कर रहा है और यहाँ पे पत्थर जो है कि रंग बिरंगे कलर से रंगे हुए है यहाँ पे देखने में बहुत ही अच्छी लग रहा है और ऊपर भी घास -उस भी --

और वहां पर एक बाइक खड़ी हुई है।

यहाँ पे नीचे भी बुक भी रखे हुए हैं और रेक में भी बुक भी रखे हुए हैं यहाँ पे उम एक लोग बैठे हुए है जोकि आआ --

अच्छा सा पिच बनाया और आ घास उस भी बहुत बढ़िया से कटिंग हो --

टीम जो है कि पीला और रेड कलर में है और एक टीम जो है वाइट अ वाइट कलर में है ऊपर नीचे दोनों वाइट है।

और जो है की बहुत बढ़ियां से अअअ खड़े हैं पीछे जो है की घर है और तार का भी पेड़ है।